और बहुत सारे फूस भी आसमान का कलर नीला है।

और कई सारे स इंसान भी है जिसके चेहरे को ब्लर किया गया है।

आसमान का रंग नीला भी है और सामने एक रोड भी है।

दो चेयर जिसके ऊपर कई सारे सामान और--

और पीछे एक वाइट बोर्ड भी है। बोर्ड के सामने एक कैलेंडर भी है।

तस्वीर के बाईने तरफ एक कुकर भी है जिसके ऊपर दो दवा के बोतल हैं।

उस पार दो इंसान भी दिखाई दे रहा है।

और कई सारे इंसान भी है ऊपर एक ब्रिज भी--

और यह सबसे समय है।

कई सारे सामान और चीजें बिक रहे हैं।

रस्ते के साइड्स में बहुत सारे कचरे भी फैला रखे हैं।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

सामने एक घर भी है जिसके बाहर बहोत सारे इंसान लोग खड़े हुए हैं।

अंदर एक भाई भी है और एक भाई साइकिल पे है । पीछे बहुत सारे घर भी दिखाई पड़ रहे हैं।

बाहर दो फूल पॉटस् लगे हुए हैं।

घर के खिड़कियों को शीशा से बनाया गया है।

मुझे इस तस्वीर में एक जगह का नजारा दिखाई दे रहा है।

चार गाड़ी सफेद रंग और एक गाड़ी काला और बहुत सारे पेड़ पौधे भी--

मुझे इस तस्वीर पे एक रेस्टोरेंट का अंदर दिखाई दे रहा है।

और टिशू पेपर भी है और एक पानी का बोतल--

सामने बहुत सारे मछली बेच रहे हैं जो कि अलग अलग टाइप का है।

जिसके शक्ल को ब्लर किया गया है।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

और नीला रंग का एक चेयर भी--

सामने एक गाड़ी भी है।

तस्वीर के दाहिने तरफ एक आदमी का आधा हिस्सा भी दिखाई दे रहा--

जिसका रंग हरा है और आसमान का रंग नीला है।

मुझे इस तस्वीर में एक मेला दिखाई दे रहा है।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

बिल्डिंग के अन्दर कई सारे लाइट्स भी लगाए गए हैं।

दोनों टेबल के ऊपर सॉस वॉटर बोतल स्पून टिशू पेपर रखा गया ह।